जैसे झूमर प्लास्टिक का सामान--

यहां बहोत सारी फाइल और रजिस्टर रखे हैं पीले रंग की सफेदी हैं।

एक कमरा दिख रहा है यहां पर बहोत सारी छांव है।

बहोत भीड़ है बहोत बड़ा है एरिया --

यहां बहोत सारे फूलों के बगीचा है।

बच्चे के साथ काम कर रही है बहोत बड़ा--

यह कोई नूडल की फैक्ट्री है।

इसमें साफ सफाई से कम होता है।

यहां लाइटे लगी है और बड़ी बड़ी टीन है।

यह एक बाजार का रोड है।

बहोत सारे लोग है सभी लोग खड़े हैं बसों की बाट में--

एक ऑटो वाला है जो अपनी सवारी को बुला रहा है पीछे दूसरा ऑटो वाला है।

यहां चारों तरफ हरियाली है और एक--

बहोत प्यारा समय है शाम का समय है शांत महौल है।

यहाँ पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बैंगल्स लेडीज मेकअप का सामान मिलता हैं।